यहाँ दीवार है जिसपे कपड़े रखे हुए हैं एक।

ये बाँस का पौधा लग रहा है।

क्योंकि रैंक बना हुआ है शायद ये दुकान हो सकता है।

एक ठेला भी जा रहा है एक साइकिल भी है।

झूले का कलर रेड है।

जमीन यलो कलर की लग रही है।

और एक पिक्चर भी उस पर लगाई गई है।

पीछे एक बिल्डिंग है उसका नाम तो साफ दिख नहीं रहा है।

रोड पर कुछ गाड़ियाँ चल रही हैं।

गार्डन की बाउंड्री का कलर ग्रीन है।

ये एक गार्डन का पिक्चर है।

गार्डन हरा भरा दिख रहा है।

शायद शादी विवाह का स्टेज बनाया जा रहा है।

और एक मारुति की वैगनआर है।

जहाँ बहुत सारी बिल्डिंगे हैं।

जहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं।

यह एक दुकान का पिक्चर है।

ये किसी बिल्डिंग का पिक्चर है।

गार्डन में पेड़ लगे हुए हैं।

ये पिक्चर किसी शॉप का है।

यहाँ पे खिड़कियाँ लगी हुई हैं जिसका कलर ब्लैक है।

किसी घर का पिक्चर है जहाँ पे मिस्त्री घर बना रहा है।

ईंट रखा हुआ है बालू भी है।

दो लोग काम कर रहे हैं पिलर लगा हुआ है।

और जमीन का कलर वाइट है।

यहाँ पे मिर्ची रखा हुआ है हरी मिर्च।

बहुत सारे लोग भी इधर हैं।

में मोर का पंख लगा हुआ है।

नीचे भी कुछ फूल पड़े हुए हैं।

जहाँ पर बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करने के लिए आए हुए हैं।

और उसके पीछे एक झोपड़ी है।

रेड है कुछ ये ब्लैक है।

एस_ बी_ आई_ का पिक्चर है जोकि बैंक है।

जहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं जिसका कलर --

यह किसी गार्डन का पिक है जोकि बहुत ही हरा भरा है।

का बॉर्डर जो है वाइट कलर का है।

छत पे दो पंखे लगे हुए हैं।

में कुछ नक्काशी भी की गई है।

पिक्चर एक दुकान का है जिसका कलर --

वहां पे एक गाय भी है एक आदमी खड़ा है।

वहां पे लिखा है द हॉट किचन ।

पानी फड़ा हुआ है पानी का कलर हड़ा है।

घर में बहुत सारे पेर पौधे लगे हुए हैं जिसका कलर हरा है।

ये स्टेज का पिक्चर है।

इस पे लिखा है वैशाली पाटलीपुत्र दूध उत्पादक सरकारी संघ--

ये पिक्चर एक मंदिर का है।

यहां पे नीचे एक भगवा कलर का वस्त्र--

और गेट शायद अभी बन ही रहा है।

ये पिक्चर भी किसी मस्जिद का है।

ये उनका एक धार्मिक स्थल है.

ये एक शॉप का पिक्चर है यहां पे एक पुतला खड़ा है जो कि लहंगा --

जहां पे एक लड़का टी-शर्ट पहने हुए खड़ा है।

एक सोफा भी लगा हुआ दिख रहा है।

छोटी होने की वजह से दिखाई उतनी अच्छी से नहीं दे रही है।

ये पिक्चर एक लाइब्रेरी का है जहां पर बहुत सारे लड़के लोग पढ़ाई कर रहे हैं।

वारे हैं उस पंखे लगे हुए हैं।

कुछ लोग अंदर की तरफ कू जा रहे हैं।

पी वी एम ओनर्स टी डी एम ओनर्स इस तरह का कुछ लग रहा है।

गार्डन बहुत ही हरा भरा दिख रहा है।

यहां एक पूल बनाया गया हुआ है जिसको मल्टीकलर से पेंट किया गया हुआ है।

ये पिक्चर किसी पर्यटक स्थल का है जहां पे एक स्टैचू बना हुआ है।

उधर में एक बिल्डिंग भी है इसका बाउंड्री भी लगा हुआ है।

यहां पे तरबूज गोभी--

जो भी लोग महंगी खरीदारी करना चाहते हैं वो ट्रेड्स मॉल जा सकते हैं।

जिसका बॉर्डर ग्रीन कलर का लग रहा है।

में बहुत सारे पेर पौधे लगे हुए हैं।

जो कि नस कैफे कॉपी शॉप है।

गार्डन का कलर ग्रीन है।

यहां पे बहुत सारे लोग बैठे हुए भी हैं।

हम लोग भी कभी वहां खेलने जा सकते हैं।

यहां पे एक साइड बैटरी का कार्टून भी रखा हुआ है।

पूजा की तो भैंसे भी यहां दिख रही है।

आपस में शायद बातें कर रही हैं भूसा खाने को लेकर के।

बैकग्राउंड में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं जिसका कलर --

जिसके गेट पर लिखा हुआ है शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह।

इंटर स्तरीय पटना हाई स्कूल ।

ये मुझे मैरिज हॉल की तरह लग रहा है।

गोआ गार्डन जो लिखा हुआ है वो बैंगनी कलर और वाइट कलर में लिखा हुआ है।

रेस्टोरेंट का कलर वाइट और येलो --

ये एक घर का पिक्चर लग रहा है।

के सामने का गेट पे ये पांच छह गमले लगे हुए हैं।

का कलर हरा दिख रहा है।

शॉप है जहां पे कुरकुड़े वगैरह का पैकेट रखा हुआ है।